पूरा लाइटिंग हो भैर बिटि लोग मस्त लोग भी रोन ठुला ठुला लोग हो दूर दूर तक मंदिर ।

ई मतलब रोड दिख रहा है उत अ बीचो बीच मैं कुछ मकान है गार्डन है।